क्लासेस जॉइन करके स्विमिंग कर सकते हैं नहीं तो अपन एक दिन का कुछ भी पे करके जो भी उनका चार्जेज हो वो पे करके कर सकते हैं।

ये एक पार्क है जिसमें अपन घूम सकते है खेल सकते है टहल सकते है बाते कर सकते है बैठ सकते है बहुत सारी --

पानी भी बहुत साफ दिख रहा है इसमें बहुत मछलियां भी होगी।

और जिम की मशीन्स भी लगा रखी है साथ में एक्सर्साइज भी कर सके कोच इनको ट्रेनिंग करता है ये कोच को फॉलो करते हैं।

फेस बना रखी है रो बना रखा है।

साइकिल को भी डेकोरेट कर रखा है उसके बाद नदी का पूरा व्यू आ रहा है ऊपर क्लाउड्स हो रहे बहुत अच्छे।